यहां पर बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें हैं।

उधर ऊपर बहुत सारे हरे भरे बड़े-बड़े झाड़ हैं।

उस खंबे पर एक झंडा लगा हुआ है।

और उजली गुंबद की भी एक मंदिर है।

बहुत सारे लोग दिख रहे हैं।

ये रात का मंजर दिख रहा है।

तो नामक बोर्ड लगा हुआ है।

ऊपर आसमान है यह दिन का मंजर दिख रहा है।

और यहां पर जेब्रा क्रॉसिंग जैसे--

ऊपर खुला आसमान दिख रहा है।

बहोत से लोग तैयार होकर नए कपड़े पहेन कर ठहरे हैं।

बिल्डिंगों को लाइटों से सजाया गया है।

बस के बाजू पेट्रोल पंप की डिज़ाइन और--

एक यहां पर काले रंग का बैरीगेट है।

और चारों तरफ से पानी के फवारे आ रहे हैं।

आगे अंदर एक आदमी खड़ा हुआ है।

यहां एक जिम है ऊपर सीलिंग में फैन लगा हुआ है।

और यहां पर एक व्हाइट रंग का डिब्बा भी दिख रहा है।

यहां पर एक होटल है ऊपर फैंस दिख रहे हैं नीचे टेबल है और कुर्सियां हैं।

और यहां पर कुछ आदमी भी दिख रहे हैं।

काले रंग के खंबे हैं ऊपर काले कलर का टीन शेड है।